कुछ अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे चेयर पे बहुत सारे लोग-बच्चे बैठे हुए हैं और पीछे चार लोग खड़े हुए है और --

और उधर को बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर आसमान है आसमान से नीचे एक छतरी लगा हुआ है।

आसमान अ पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।